टेबल के साथ ही छोटा सा--

कुछ चेयर्स दिख रही है रही है जोकि यहां हमें --

यहां पर हमें तीन नाव दिख रही है।

साथ में ही सीमेंट दिख रहा है।

यहां ग्रीन कलर का भी छोटासा टैडी है और येलो कलर का टैडी दिख रहा है।

आसमान का कलर व्हाईट ब्लू बैंगनी दिख रहा है।

व्हाइट कलर की मिट्टी का कलर व्हाइट --

व्यक्ति ने व्हाइट कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

यहां पर हमें बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे है।